यहां छोटे छोटे पत्थरों से मिलके एक स्टेचू बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे तीन व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

ये पानी का कलर हरा है।

सामने पानी का तीन टंकी भी रखा हुआ है।

इसके पीछे एक बड़ा सा कार भी दिख रहा है।

सामने में एक लेडिस खड़ी दिख रही है।

यहां पे बहोत सारे डेकोरेशन भी किए गए हैं।

यहां बहुत बड़ा सा एक दरवाजा भी है।